यहाँ पर बहुत सुन्दर सजावट है यहाँ पर पार्टी चल रहा है जैसे लग रहा है शादी विवाह है एक लेडी जा रही हैं वो नारंगी कलर के कपड़े पहनी हुईं हैं और कुर्सियां लगी हुई --

यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक घर है घर में एक चंद्रमा लगा हुआ है अ इसके अन्दर शीशा भी लगा हुआ है जे पर्दा भी है और एक आदमी खड़ा है।

ये बहुत दूर में घर है इस घर में बहुत सारा गेट लगा हुआ है उस गेट में चौखट भी है वहाँ ग्रिल भी लगा हुआ है वो बहुत डिजाइनिंग है।

यहाँ पर डॉक्टर का एक लिंक क्लिनिक में बहुत सारे आदमियाँ हैं जैसे लग रहा है यहाँ पर दिखाने आई है और यहाँ पे बैठे हुए सारे डॉक्टर अपना-अपना मास्क लगाए हुए हैं व्हाइट कलर का कपड़ा --

ये हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल में बहुत सारा बेड लगा हुआ है दो आदमी बैठे भी हैं और काउंटर भी लगा हुआ है वो बहुत दूर में हैं यहाँ पर सारे मरीज आते हैं।

यहाँ एक सड़क दिखाई दे रहा है उस सड़क के किनारे बहुत सुन्दर पार्क बना हुआ है उस पार्क में बहुत सारा फूल लगा हुआ है वहाँ पर घर भी दिखाई दे र --

ये बहुत बड़ा फील्ड है इस फील्ड में घास जमा हुआ है।

और तीन पौधा भी लगाया गया है उसमे जाली बिना हुआ है और बहुत सारा --